circulation पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगेcirculation and fine rules for the patron category
check out issuing
renewing और check in returning
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
और koha version 1605
इस tutorial का अनुकरण करने के लिए शिक्षार्थियों को library science से परिचित होना चाहिए
इस tutorial का अभ्यास करने के लिए आपके system पर koha संस्थापित होना चाहिए
और आपको koha में admin access भी होना चाहिए
यदि नहीं तो कृपया इस website पर koha spoken tutorial की श्रृंखला देखें
सबसे पहले हम patron category के लिए circulation और fine rules के बारे में सीखेंगे
spoken tutorial library में post graduate student के रूप में एक patron category बनाएँ
याद रखें उपरोक्त सभी इस श्रृंखला में पहले के tutorial में समझाया गया है
हम इस tutorial में बाद में इस जानकारी का उपयोग करेंगे
spoken tutorial library में post graduate student के रूप में patron category जोड़ने के बाद आपका koha interface कुछ इस तरह दिखेगा
superlibrarian username bella और उसके password से login करें
koha administration पर जाएँ
patrons and circulation section में circulation and fines rules पर click करें
defining circulation and fine rules for all libraries खुलता है
select library पर जाएँ और dropdown से spoken tutorial library चुनें
शीर्षक defining circulation and fine rules for spoken tutorial library के साथ एक नया पेज खुलता है
patron category section में dropdown से post graduate student पर click करें
item type में dropdown से book पर click करें
current checkouts allowed field में 5 प्रविष्ट करें
मैं current onsite checkouts allowed को खाली छोड़ दूंगी
loan period में 15 प्रविष्ट करें
मैं unit को ऐसे ही छोड़ दूंगी जैसे यह है अर्थात days
hard due date को ऐसे ही छोड़ दें
fine amount में 5 प्रविष्ट करें और fine charging interval में 1 प्रविष्ट करें
मैं when to charge को ऐसे ही छोड़ दूंगी
मैं fine grace period को खाली छोड़ दूंगी
मैं overdue fines cap amount: और cap fine at replacement price: को खाली छोड़ दूंगी
मैं suspension in days day को भी खाली छोड़ दूंगी
maximum suspension duration day को भी खाली छोड़ दूंगी
renewals allowed count में 10 प्रविष्ट करें
मैं renewal periodv और no renewal before: को खाली छोड़ दूंगी
automatic renewal को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी जैसे यह है
holds allowed count में 5 प्रविष्ट करें
on shelf holds allowed के लिए dropdown से if all unavailable चुनें
item level holds को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी
rental discount को खाली छोड़ दें
इसके बाद table के दाएं कोने में actions section पर जाएं और save पर click करें
defining circulation and fine rules for spoken tutorial library पेज फिर से खुलता है
इस पेज में वे सभी प्रविष्टियां हैं जिन्हें हमने अभी भरा है
select the library शीर्षक के बगल में clone these rules to पर जाएँ
dropdown से spoken tutorial library चुनें
फिर clone button पर click करें
शीर्षक cloning circulation and fine rules from spoken tutorial library to spoken tutorial library के साथ नया पेज खुलता है
the rules have been cloned message box प्रदर्शित होता है
अब spoken tutorial library items जैसे कि books cd/dvds bound volumes आदि के checkout और checkin के लिए postgraduate student के रूप में एक patron ms reena shah बनाएँ
याद रखें पिछले tutorial में patron बनाते समय हमारे staff के लिए set permissions है
हालांकि यहां patron के लिए permission set न करें यानि छात्र ms reena shah
बस आवश्यक विवरण प्रविष्ट करें और पेज के शीर्ष पर save पर click करें
अब superlibrarian account से लॉगआउट करें
ऊपरी दाएं कोने में spoken tutorial library पर क्लिक करके ऐसा करें
dropdown से log out पर click करें
फिर library staff samruddhi से login करें
फिर home पेज में circulation पर click करें
checkout से शुरू करते हैं
circulation पेज पर checkout पर click करें यानि issuing प्रक्रिया
खुले हुए पेज पर enter patron card number or partial name field देखें
उसी search field के दाईं ओर submit button पर click करें
एक नया पेज खुलता है checking out to reena shah 3 enter item barcode: field में
मैं value 00001 प्रविष्ट करूंगी
याद रखें इस barcode as accession number का पहले किसी tutorials में उल्लेख किया गया था
इसलिए checkout के लिए वही value प्रविष्ट की जाएगी
अब field के नीचे checkout पर click करें
checkout विवरण देखने के बाद पेज के निचले हिस्से में show checkouts पर click करें
उसी पेज पर checkedout item के सभी विवरणों के साथ एक table दिखाई देती है
विवरण जैसे कि: due date title item type location checked out on checked out from call number charge fine price renew और check in
यदि item renewed या checked in होना चाहिए तो table के नीचे renew or check in selected items टैब पर click करें
यदि एक से अधिक item हैं तो पेज के नीचे renew or check in selected items टैब के आसपास स्थित renew all टैब पर click करें
मैं किसी भी टैब पर click नहीं करूंगी क्योंकि मैं दिखाऊंगी कि items को नवीनीकृत कैसे करें और koha homepage पर circulation टैब का प्रयोग करके check इन करें
उसी पेज पर ऊपरी बाएँ कोने पर circulation पर click करें
खुलने वाले नए पेज पर circulation में renew पर click करें
एक नया पेज खुलता है
फिर field के दाईं ओर submit पर click करें
dialogbox item renewed के साथ एक नया पेज खुलता है
फिर उसी पेज पर बाएँ कोने में circulation पर click करें
खुले हुए नए पेज में circulation में check in पर click करें
खुले हुए नए पेज में enter item barcode देखें
मैं barcode as accession number 00001 प्रविष्ट करूंगी जो item पहले checked out किया गया था
और field के दाईं ओर submit पर click करें
एक table में विवरण प्रदर्शित होते हैं जैसेdue date title author barcode home library holding library shelving location call number type patron और note
ध्यान दें: titleindustrial microbiology
barcode00001 और patronshah reena pg पहले भरे pg विवरण के अनुसार है
इसी के साथ हमने circulation पूरा कर लिया है
अब library staff account से लॉगआउट करें
ऐसा करने के लिए ऊपरी दाएँ कोने पर जाएँ और spoken tutorial library पर click करें
फिर dropdown से log out चुनें
संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा: circulation and fine rules for the patron category
check out issuing renewing check in returning
नियतकार्य के लिए patron ms reena shah के लिए एक ओर book जारी करें
निम्नलिखित link पर video spoken tutorial project का सारांशित करता है
spoken tutorial project team कार्यशालाएं आयोजित करती है और प्रमाण पत्र देती है
कृपया समय के साथ अपने प्रश्नों को इस forum में post करें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
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं ज्योति सोलंकी आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद